और एक पाइप लटका रखा हुआ है। जिससे ऊपर का पानी नीचे आता है और इसमे बहुत सारे पिलर है। पिलर ब्लू कलर किए हुए है।

यहाँ एक स्टेचू बना हुआ है स्टैचू के थोड़ा आगे स्टील का ग्रिल लगा हुआ है इस उसका आगे लोहा का ग्रिल लगा हुआ है।

जिला अतिथि गृह लिखा हुआ है ऊपर पोस्टर वहाँ का लाल कलर किया हुआ है यहाँ बहुत सा पेड़ लगे हुए है।

ये मस्जिद है। मस्जिद के इधर एक दीवार है। मस्जिद मे एक गुंबज है और दो मीनार है। और गुंबज मे हरा कलर किया हुआ है। एक खिड़की है।

और ऊपर मे लाल पट्टी है और चारों तरफ टाइल चिपकाया हुआ है और उसके आगे ईटा सोलिग किया हुआ है।

टाइल्स लगा हुआ है। ऊपर मे है।

जब जंगल है और जंगल का उम्म पत्ता का कलर हरा है। और यहाँ से एक रोड निकला हुआ है जो इटा सोलीन है। और बगल मे जंगल--

और ये वी बाजार हुआ सेल लगा है। सैठ पर्सेन्ट छूट है ।और एक साइकिल खड़ा है। उसके बाहर मे एक मोटरसाइकिल है। एक फोर व्हीलर भी है।